और कुछ लोग ग्राउंड में खड़े हुए हैं और पीछे पेड़ पौधे लगे हुए हैं और--

यहां पे सामने ब्लैकबोर्ड --

मछली और तरजुआ रखा है।

और इधर साइड में एक बोरियां भी है।

और चदरी रखी हुई है ऊपर ऊपर--

और कुछ बाहर बोरियां पड़ी हैं।

दुकान है दुकान में टायर हैं इधर उधर पड़े हुए हैं।

रिंच भी पड़ी हुई है।

कुछ फैंसी पेड़ हैं। कुछ नॉर्मली पेड़ हैं।

और नीचे उधर एक छोटे छोटे श्श लोहे के सोफा टाइप रखे हुए हैं और सामने बिजली वाले खंभें भी हैं तार भी हैं।

ये महिला स्टैचू बनकर खड़ी हुई है।

रोड की तरह ये दिख रहा है।

और इधर अगल बगल मकान भी बने हैं।

सब पुते हुए भी हैं और लोहा भी ऐंगल भी--

साइड में लैट जलती हुई दिख रही है और--

और टेबल पे एक गमला भी रखा हुआ है और वह गिलास भी रखी हुई--

इसमें चार पहिये होते हैं लाइट होती है शीशा होते हैं डोर होती हैं।

ये बौद्ध भगवान है मेरे।

और यहां बैठे हुए हैं।

और बाहर कुछ रखा है।

बड़ा भी है और पीछे पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं।

और मंदिर में सामने पूजा करते हुए पंडित जी दिखाई दे रहे हैं और--

टेंट भी पीछे लगी हुई है सफेद पर्दा लगा है।

ग्रिल भी लगी हुई किनारे किनारे।

और इधर डस्टबिन भी रखा है और--

का रास्ता में सामने वो जो रहते हैं लाइटें उसमें जल रही हैं।

यह एक माल है यहां पर कुछ साड़ियां और लहंगे लगे हुए हैं।

बाहर एक कार दो कार खड़ी हुई हैं।

यहां पर ए एक बड़ा सा तालाब है और पेड़ भी उसके बगल में लगा हुआ है बड़ा सा और घास भी है।

कुछ हुए रखे हैं कुछ इधर उधर पड़े हैं।

खिड़कीयों में शीशा लगा हुआ है।

और बाहर उधर दो तस्वीर टाइप के हैंगर टांगे हुए है।

साइड में सुनार की दुकान है और उसमें हार टांगे हुए हैं।

और नीचे इधर बगल में शीशा की रेलिंग लगी हुई--

और सामने उधर एक बड़ा सा बर्तन रखा हुआ--

और पेड़ थोड़ा नी नीचे पेंट भी है

पी_डबलू_डी का बोर्ड लगा हुआ हैं।

कई प्रकार की पेड़ लगी हुई और सामने ग्रिल भी इधर साइड में लगी हुई है।

और सामने थोड़ा हल्का हल्का सूरुज निकले हुए हैं।

और सामने फैन भी है और एक सामने लड़का भी बैठा हुआ है।